नमस्कार लाजिकल ऑपरेटर्स के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
यह काफी संक्षिप्त ट्यूटोरियल है किन्तु मैं अभी इसे इसी प्रकार से रखूँगा
मैं एक इफ statementस्टेट्मेन्ट का एक उदाहरण फिर से इस्तेमाल करूँगा क्योंकि अभी तक मुझे यही मिला है
लाजिकल ऑपरेटर क्या है160
चलिए थोडा सा तर्क यानि लोजिक जोड़ते हैं और कहते हैं यह एंड या ओर ऑपरेटर है
अब यदि मैं अपने इफ स्टेटमेंट स्टेट्मेन्ट के लिए अपना बुनियादी नक्शा बनाना शुरू करता हूँ तब मुझे आपको यह दिखाने पर काम करना होगा कि आप इनके साथ क्या कर सकते हैं
इससे पहले हमारे पास एक उदाहरण है जैसे कि 1 1 से बड़ा है जो अभी फलसे देगा
चलिए केवल इसे जाँचे यह देखने के लिए कि हम कहाँ हैंसही
अतः यह फलसे है
अब क्या होगा यदि मैं बोलूँ कि इफ 1 इस ग्रेटर थान 1 ओर 1 इक्वल्स 1इफ 1 1 से बड़ा है या 1 1 के बराबर है
अब हम यह इस तरह ओर नहीं लिख रहे हैं हम इसको दो क्षैतिज रेखाओं या दो पाइप से लिख रहे हैं
इसके बारे में काफी सुनिश्चित तो नहीं है किन्तु यदि मैं अपने कीबोर्ड को जानता हूँ यह शिफ्ट बटन के बाद में होगा 2 क्षैतिज रेखाएं और इसका मतलब ओर है
अतःयदि हम इसे कंपाइल करें आप क्या सोचते हैं उत्तर क्या होगा
अब चलिए इसको एक बार रन करते हैं इफ 1 इस ग्रेटर थान 1 यदि 1 1 से बड़ा है फलसे और इसलिए हमने लिखा है फलसे ओर 1 इस इक्वल टो 11 1 के बराबर है
हम जानते हैं कि 1 इक्वल्स टो 1 ट्रू है अतः यहाँ हम कह रहे हैं किor1 इक्वल्स टो 1 नोट एंड क्योंकि यदि हम एंड कहते हैं तब दोनों को ट्रू होना चाहिए
या इनमें से कोई भी ट्रू हो सकता है
आउटपुट
अतः आशापूर्वक हमें ट्रू मिलेगा
ठीक है तो यह ओर है
यह मूलतः आपको दो तुलना करने कि अनुमति देता है इनको आपके इफ statementस्टेटमेंट में दर्शाइए और यदि इनमें से कोई भी ट्रू है तो यह एक आइथर ऑपरेटर के समान है
इनमें से कोई भी ट्रू होगा आपको ट्रू मिलेगा
एंड ऑपरेटर अलग विषय है
एंड को यह निष्पादित करने के लिए इन दोनों के ट्रू होने कि आवश्यकता होती है
अतः हमें यहाँ फलसे मिला है क्योंकि 1 1 से बड़ा नहीं है
हम अपने कम्पेरिज़न ऑपरेटर्स पर वापस जाते हैं और हम कहेंगे 1 इस ग्रेटर थान ओर इक्वल टो 1 एंड 1 इक्वल 1 इफ 1 1 से बड़ा या बराबर है एंड1 1 के बराबर है यहाँ हमें ट्रू मिलेगा
अतः अब मैं बस यह सोच सकता हूँ कि इसमें कुछ वेरिएबल्स डाल दूँ इसे जाँचने के लिए
लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे अन्य ट्यूटोरियल्स का पालन करके आपका अब तक वेरिएबल्स पर पूर्ण नियंत्रण हो गया होगा
अतः यह दो लाजिकल ऑपरेटर्स हैं
आप इन्हें काफी उपयोगी पायेंगे क्योंकि हो सकता है कि आप उदाहरण कहना चाहें यह काफी आदर्श उदाहरण है
आप इसे मेरे कोई एक प्रोजेक्ट में पायेंगे
यह एक लॉगिन प्रारूप है
मानिए कि प्रयोगकर्ता वेबसाइट में लॉगिन करना चाहता है
संभवतः आपने वेबसाइट में पहले भी लॉगिन किया होगा और उसने आपको अपना यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज करने के लिए कहा होगा
अब कीवर्ड्स वहाँ पर हैं
हमें जाँचना की आवश्यकता है यदि उपयोगकर्ता ने यूजरनेम और पासवर्ड दर्ज किया है
यदि उन्होंने नहीं किया है तब यूजरनेम कि तुलना पासवर्ड से करने का कोई मतलब नहीं है
अतः हम कह सकते हैं उदाहरणस्वरूप इफ यूजरनेम एंड पासवर्ड
वास्तव में चलिए इसे करते हैं
मैं कहूँगा यूजरनेम इस इक्वल टो बराबर है एलेक्स के और पासवर्ड इस इक्वल टो एबीसी
अब मैं इसे स्थान पर रखूँगा
मैं कह सकता हूँ यूजरनेम और पासवर्ड इस समय यह ट्रू बोलेगा
मैं इसे बदलूँगा
मैं बोलूंगा ओक या यू फोरगोट टो फिल आउट आ fieldआप फील्ड को भरना भूल गए हैं क्योंकि अंततः यहाँ पर एचटीएमएल फील्ड्स होंगे
यह ठीक होने जा रहा है क्योंकि हमें दोनों मान मिल गये हैं
अतः चलिए कोशिश करते हैं
हाँ यह ओक कह रहा है
अब क्या होगा यदि मैं वहाँ पर अपना पासवर्ड टाइप करना भूल जाता हूँ160
इस समय वहाँ पर कुछ भी नहीं है कोई जगह नहीं चलिए इससे छुटकारा पाते हैं
यू फोरगोट टो फिल आउट आ fieldआप फील्ड को भरना भूल गए हैं
अतः यदि आप सोच रहे हैं कि यह उपयोगकर्ता की तरफ से आ रहा है अतः यह ऐसे जमा हो गया कि जैसे आपने अपना यूजरनेम और पासवर्ड टाइप किया
हम कह रहे हैं यूजरनेम और पासवर्ड मूलतः यूजरनेम खुद से ही ट्रू है क्योंकि यह मौजूद है
यदि आपने उसे अंदर रखा वह स्वीकार्य होगा वह ट्रू होगा
हम केवल जाँचेंगे
अतः क्योंकि हमें यूजरनेम और पासवर्ड मिल चुका है यह सही है
किन्तु ओर के लिए सचमुच में इसके कोई मायने नहीं है और आप सोच सकते हैं क्या होगा
अतः इस समय यह ट्रू के बराबर होगा क्योंकि हमें दोनों मान मिल चुके हैं
अतः यह ओक है
अब यदि मैं इन दोनों के साथ जाऊँ और इस पर कोशिश करूँ
यदि यूजरनेम मौजूद है अतः यदि यूजरनेम ट्रू है
इस समय यहाँ पर कोई मान नहीं हैं अतः यह फलसे है
ओर थे पासवर्ड इस ट्रू अर्थात मान मौजूद है जिस समय यह मौजूद नहीं हैतो यह फलसे है
अतः हम कहने जा रहे हैं यू फोरगोट टो फिल आउट आ fieldआप फील्ड का भरना भूल गए हैं
मैं यहाँ बस नोथिंग लिखूंगा क्योंकि इस समय इसका मतलब कुछ नहीं है
अतः रिफ्रेश करें और हमें नोथिंग मिला
अतः आप देख रहे है कि पहले से ही मैं विवरण दे चुका हूँ कि यह प्रतिदिन के पह्प प्रयोग में कितने उपयोगी हो सकते हैं
उदाहरणस्वरूप प्रारूप कोई भी भर सकता है
आप इसके लिए कई दूसरे प्रयोगकर्ता पाएँगे
लेकिन इतना ही
दो ऑपरेटर्स जो कि लाजिकल ऑपरेटर्स हैं
बस इन्हें प्रयास करिए और देखिये आप इनसे क्या कर सकते हैं
मैं इन्हें निश्चित ही अपने किसी एक प्रोजेक्ट में शीघ्र ही इस्तेमाल करूँगा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
देखने के लिए धन्यवाद